सामने हमें एक जंगल जैसा दिखाई दे रहा है।

एक बोहोत पुराना घर दिखाई दे रहा है।

जिसके पास हमें कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जिसकी दीवारें नीले रंग की बनी हुई हैं।

इस चित्र में हमें एक जगह दिखाई दे रही है।

जिसके ऊपर काफी सारे तार दिखाई दे रहे हैं।

सामने हमें कुछ कार दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक क्लासरूम दिखाई दे रहा है।

पार्क के पास एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक प्लाट दिखाई दे रहा है जिसमें पत्ता गोबी लगा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं।

मस्जिद के सामने एक बुजुखाना बनाया गया है।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

इस चित्र में हमें एक पीले रंग की साइकिल दिखाई दे रही है।

जिसमें सामने हाथों से एक दीवार बनाई गई है।

तालाब के किनारे हमें कुछ बोर्ड नजर आ रही हैं।

यहाँ पर हमें कजी पेड़ और मिट्टी दिखाई दे रही है।

यहां पर हमें काफी सारी लोग नजर आ रहे हैं।

जिसके ऊपर ड्यूब मेडिकल सेंटर लिखा हुआ है।

जिनमें तरह-तरह के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक खेल का मैदान दिखाई दे रहा है।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

इस चित्र में हमें एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें एक औरत और आदमी नजर आ रहा है।

यहाँ पर हमें बहुत सारी ज्वेलली नजर आ रही है।